हरे रंग के छोटे छोटे पदार्थ है।

फिरोजी रंग का आसमान है।

झाड़ की बाउंड्री ब्राउन कलर की है कुछ काले सफेद रंग के कपड़ों में--

ड्राइवर है पीले रंग का काले रंग का स्कूटी है लाल रंग की गाड़ी है फिरोजी रंग की--

फिर उसी रंग का हाथ बना हुआ है।